उनके सामने स उनके सामने पीले लाल नीले कलर के फूल हैं| आगे पीले कलर का एक फ्रेम है और गुलाबी कलर का।

इस तस्वीर में हमें मां दुर्गा की मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के बगल में दो दो शेर है जिनका कलर पीला है।

में हमें सफ़ेद कलर की एक टेबल दिखाई दे रही है टेबल के सामने सीढ़ी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक आदमी ने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।